यहाँ पर हमे बहुत बड़ी मल्टी दिखाई दे रही है जिस मल्टी में बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही है वही उस में बालकनी भी दिखाई दे रही है।